एक काफी बड़ा बिल्डिंग है। काफी अच्छा है बिल्डिंग है देख सकते हैं।

कप ब्लैक और सिल्वर कलर में है। देख सकते हैं काफी अच्छे से डिजाईन किया गया है।

अलग -अलग जगह में काफी सारे घर हैं। पेड़ हैं पौधे हैं।

और गद्दे का कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर के पत्ते का डिजाईन दिया गया है। काफी बढ़िया लग रहा है देखने मे।

और काफी बढ़ियां है दिखने में देख सकते हैं |

उसके बगल मै कोई बड़ा गांव है और गांव है देख सकते हैं। काफी बढ़ियां सीन आ रहा है चट्टान के ऊपर पहाड़ी के ऊपर।

बनाया गया है। काफी बढ़िया से बनाया गया है देख सकते हैं। तीन ठो बड़े-बड़े है।

और काफी ज्यादा लाइटिंग का भी --

और काफी बढ़िया सजाया गया है स्टेज को देख सकते हैं।

और काफी रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं देख सकते हो।

अगल बगल का सीन भी काफी अच्छे हैं और काफी साफ सफाई की अ --

देख सकते हैं। वाइट कलर का --